यहाँ एक खाली जमीन है जमीन पर हरी हरी घास है चारो तरफ कोई नहीं है ।

सामने एक मनुष्य खड़ा हुआ है पटरी पर ट्रेन नहीं है।